यह एक डिस्काउंट बुक स्टोर है।

जिसमें लाल कलर के फूल हैं पीले कलर के फूल हैं।

उसके उपर मसाले रखे हुए हैं उसके साइड में मीचे रखा हुआ है और नीचे अन्य प्रकार के खाने की चीजे चीजे रखी हुई हैं।

पेनें रखी हुई हैं पेंसिल रखी हुई। अन्य प्रकार के स्टडी का समान रखा हुआ है।

यह एक स्विमिंग पुल है। जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति नहा रहे हैं।

यहाँ पर बहुत सारी मल्टी बनी हुई है।

यह एक पेड़ है जिसपे कई सारे धागे --

बच्चे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें बना रहे हैं।